जैसा कि हम देख सकते है सामने हमको ये बहोत ही प्यारा नजारा दिख रहा है हमको ये अम स्टील की मशीनों की जेसे कुछ पार्ट्स दिख रहै है मशीनों के पार्ट्स दिख रहे है जो की स्टील --

जेसा कि हम देख सकते है सामने हमको मछलियां दिख रही है मछलियां बहुत ही सुदर लग रही है और बहुत ही प्यारी लग रही है इसमे छोटी छोटी झींगे भी दिखाई जो कि वाईट पीले कलर की दिखाई जो की बहोत ही अच्छी दिख रे।

जैसे की हम देख सकते है की सामने हम को क्रीशयन लोग दिख रहें हैं क्रीशयन लोग का घर दिख रहा है पीछे हरा कलर पतरे डाले हुए दिख रहा है क्रीशयन साईंन दिख रहा है जो बहुत अच्छा दिख रहा है उसमें फेमेली दिख रही है।

बस के ऊपर भी बहोत सारे लोग दिखे रहे हैं बस के आस पास भी बहोत सारे लोग दिख रहे हैं एक लेडिस दिख रही है जोकि सामने की ओर देख रही है एक पेड़ देख रहे है पीछे हरे हरे बहोत ही प्यारे दिख रहे हैं पीछे एक टापरा दिख रहा है ।